निचे जो पानी बह रही ऊपरे पुल बनी हुई है जिसमें कारे चल रही है रास्ते हैं जो रास्ते के अलग बगल गमले रखे हुए जिसमे --

एक बस स्टॉप हैं जहाँ स्टॉप मे कुछ दो तीन बसे खड़ी हुई हैं कुछ कारे खड़ी हुई हैं एक आदमी जो खड़ा हुआ हैं।

एक मंदिर हैंजिस मंदिर के सामने उधयब जी बैठे हुए हैंऔर अगल बगल विचित्र दीवालों मे पाए मे मंदिर--

'' जो जंगल है जिस जंगल में अगल बगल हरे घास जमे हुए है एक लड़का का जो हाथ है ज-- एक लड़का हाथ में अपना फूल सफेद सफ़ेद कलर'''' का रखा हुआ है अलग बगल हरे भरे पेड़ पोधे भी है। ''